और जो है साइड से दीवालें बनी हुई हैं दीवालें पे दो व्यय --

एक अरहाना एक स्वच्छ भोजन ही जीवन का आधार है। बालद--

जैसा की मैं इस तस्वीर को देख पा रहा हूँ। ये तस्वीर जो है किसी कॉलेज के--

जैसा कि मैं इस तस्वीर को देख पा रहा हूँ ये जो है किसी सुपरमार्केट की तस्वीर सुपरमार्केट दुकान की तस्वीर है।